आप इस पिक्चर में एक शादी का फंक्शन --

व्यक्ति घूमती हुई भी दिखाई--

इस पिक्चर में देख सकते हैं कि--

और बैठी हुई दिखाई दे--